और गार्डन दिखाई दे रहा है यहां पर घास है।

इस फोटो में सामने अ सफेद रंग की दीवार दिखाई दे रही है ऊपर लाइट लगी हुई है।

के यहां पर पेड़ दिखाई दे रहे हैं घास दिखाई दे रही है।

इस फोटो में एक कॉरिडोर दिखाई दे रहा है ऊपर की तरफ लाइट्स लगी हुई हैं नीले रंग का दरवाजा है।

इस फोटो में एक कमरा दिखाई दे रहा है।

पीछे कुछ और भी ट्रांसपोर्ट व्हीकल आते हुए दिखाई दे रहे हैं बिजली की तार हैं।